यहां दो-तीन विंडो दिये गए है और नीचे साइड में व्हाइट कलर की बाउंड्री है उसके साइड में कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है और घास वगेरा है साइड में कुछ बना हुआ है यह जो कि कत्थई कलर का है।

यहां पर केक रखे हुए है दो एक का कलर येलो है जिसमें दो फूल बने हुए पिंक एंड पर्पल कलर के और ग्रीन कलर की पत्तियां निकली हुई हैं।

ये एक रास्ता है जहां पे काफी सारे घर बने हुआ है साइड में एक पेड़ लगा हुआ है और एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसके ऊपर एक लोग बैठा हुआ है। यहां का कच्ची जमीन है।

ये एक बैडरूम है जहांँ पर बैड बिछा हुआ है डबल बैड है ये। इसका कलर वाइट है और इसके पिलो का कलर भी वाइट है।

यहां पर कोई फंसन हो रहा है जिसके लिए डेकोरेशन किया जा रहा हैं यहां पर बड़े-बड़े पॉट रखे हुए हैं।

यहां पे रेड कलर की कार्पेट बिछी हुई है सामने की ओर अभी भी डेकोरेशन हो रहा है जिसमे फ्लावर्स लगे हुए हैं पर्दो से साइड से डेकोरेशन किया जा रहा हैं और यहां पे दो लोग है।

और ऊपर ये टीन लगे हुए हैं और ऊपर एक बल्फ लगा हुआ हेगा और दुकानों में कुछ समान---